यहां कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है उसमें फिटिंग बनी हुई है।

ये एक ऑफिस है जिसमें कुछ कुर्सियां पड़ी है।

ऊपर छत में पंखे लगे हैं।

जिन पे कुछ आदमी बैठे है और लेडीज भी बैठी है।

ये एक स्कूल है जिसमें बहुत सारी मेज पड़ी है।

ये एक बहुत बड़ा शोरूम है।

आदमी भी है। एक बच्चा है और पीछे हरे भरे पेड़ है।

जो पन्नी में पैक है उसके पास में एक अलमारी रखी है।

इसमें कुछ जंगले लगे हैं।